जहां पर नहेर में थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है यहां पे एक रॉयल एनफील्ड की गाड़ी भी खड़ी हुई है।

इस दुकान की दीवाल पे लिखा हुआ है मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट --

इस दृश्य में पांच मंदिर दिखाई दे रहे हैं जो पिक और ऑरेंज कलर से पुते हुए हैं।

इस इमेज में कई सारे बच्चे रोड स्काइडिंग करने के लिए एक पोजीशन में खड़े हुए हैं।

बिल्डिंग के ऊपर काफी सारे सरिए के पिलर खड़े हुए हैं और कई कलर के झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये एक शादी की इमेज है जहां पर बहोत सारे लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं।

यहां पे कई सारे कैमरे की लाइटें लगी हुई है ट्राइपॉड पर।

पीछे की तरफ धूप की बहोत तेज रोशनी बढ़ रही है और काफी सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक गाय ब्लैक और एक गाय भूरी है बाकी सब बाइट कलर की गाय हैं।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

ये एक मार्केट की इमेज है जहां पर बहोत सारे लोग आवा गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।